फील्ड के चारपास कुछ हाउस भी दिखाई दे रहा है।

पेन पेंसिल इरेजर नोटबुक भी यहाँ पे मिलती है।

इधर एक हॉल में अनुष्ठान हो रहा है।

नदी बहुत बड़ा है बहुत सूंदर है।

दूर में कुछ बड़ा-बड़ा हाउस दिखाई दे रहा है।

फील्ड की आस-पास में बहुत बड़ा-बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है।

बाली बम्बू का टुकड़ा बहोत सारे कंटेनर दिखाई दे रहा है।

दोकान में बहुत सारा साइकिल दिखाई दे रहा है।

दुकान के अंदर बिस्कूट्स चॉक्लेट बहुत सारे खाने का पैकेट दिखाई जाता है।

एक विंडो भी दिखाई दे रहा है।

पास में एक फ़ूड पार्लर है उधर तीन लोग खड़ा है ए --

मोस्जिद में रोज बहोत सारे लड़का नमाज़ पढ़ने के लिए आते है ।

कुछ चेयर भी दिख रहा है।

इधर एक मिट्टी का रास्ता दिखाई दे रहा है रास्ता के पास एक फील्ड है ।

सामने कुछ बैग्स भी हे।